और देखने में तो बहुत ही सुंदर भी है ये गुफा बहुत ही सुंदर है और काफी अच्छी भी दिख --

और यहाँ पे डीजल और पेट्रोल भी लगता है मिलता है और ये स दुकानें भी काफी सुंदर और काफी बड़ी भी दिख रहीं हैं।

इस चित्र में दिखाया जा रहा है और ये एक मकान का फोटो है और देखने में ही काफी बड़ा मकान है और काफी गेट भी हैं। इसके बा और काफी खिड़कियां हैं।

इसका इस घर में सफेद कलर भी पुता हुआ है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस घर के सामने एक कुआ भी बना हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा --